कुछ लोग रस्सी टांग रे है कुछ लोग बांस पकड़े हैं कुछ लोग कपड़ा सुखा रहे हैं और चाबुक है बहोत सारा सबाल है।

एक ऑफिस है जहां वहां एक टेलीफोन है कुछ लोग बैठे हैं बैग है।

येलो कलर का घर है पिकं कलर का बाॅल है लाइट है।

पैंट पहना है और कुछ बोर्ड लगा हुआ है।

ट्रेंड्स लिखा है ऊपर में बहोत सारा शोपीस है जिसमें बहोत सारा स्टाइलिश कपड़ा है।

घर बना है। ग्रीन पर्पल रेड कलर का लाइट लगा है और वॉल भी लगा है और लोहे का लकड़ी का--

एक भूत टेंपल बना है बहोत पुराना सा मूर्ति है उसका रंग भी जा रहा है और बोहोत सारा रंग बिरंगा भूत टेंपल भी बना हुआ है।

टायर भी वहां पर लगा हुआ है जिसमें हवा बहोत ही भरा हुआ है।

एक दुकान है जिसका नाम ए_वन_एन_जे_वी --

फैन लगा है फ्रिज रखा हुआ है कॉफि मशीन है कैमरा लगा हुआ है।

बोतले रखी हुई हैं लाइटें लगी हुई हैं थेम्स अप का फ्रिज लगा हुआ है।